और उसी के नीचे अगर देख तो एक छोटी सी दुकान में अ इंडियन पोस्ट का एटीएम लगा हुआ है और ये काफी फायदेमंद है।

जिसके बॉर्डर्स पर ब्राउन कलर का पेंट कर रखा है और इसके एंट्रेंस गेट पर लिखा हुआ है। ए नाम मुजफ्फरनगर और इसी के आस-पास दोनों साइडों में टीन शेड्स से कुछ एरिये को कवर कर र --

और दोनों ही मूर्ति काफी अच्छे से काफी अच्छी तरह से फूलों से शुद्ध फूलों से इसे सजाया गया है।

इस इमेज में हमें सामने की तरफ एक स्कूल बना हुआ दिख रहा है और स्कूल पे नेमप्लेट भी लगी हुई --

इमेज में अगर हम बात करें तो हमें यहां पे कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए दिख रहे हैं जो कि व्हाइट बिल्डिंग के रुफ के नीचे हैं।

आप इस इमेज में सामने की तरफ देखी रहे होंगे कि ये जो व्यू है। ये काफी अच्छा लग रहा है और आप इसपे देखिए कि आपको निरवाल हॉस्पिटल की एक व्यू है।